ये एक ए.टी.एम. के बाहर का फोटो है।

ये एक एरिया है।

ये एक बिल्डिंग बनी हुई है व्हाइट कलर की बहोत खूबसूरत।

और सामने थोड़ी-सी स्पेस दिख रही हैं।

मार्केट का हिस्सा है अलग-अलग फ्लोर पे अलग-अलग दुकाने बनी हुई हैं |

कुछ लोग बैठे हैं तो कुछ खड़े हैं तो कुछ चल रहें हैं।

इनका बैकग्राउंड बहोत खूबसूरत है उसमें एक मूर्ति बनी हुई है।

रोड भी दिखाई दे रहा है।

स्कॉर्पियो खड़ी हुई है ओर मैदांन दिख रहा है।

पीछे कुछ लोग साथ जाते नजर आ रहे है और एक बिल्डिंग बनी हुई है।

ये किसी दुकान का फोटो है जहां पर कुर्सी वगैरा मिलती है जिसपे --

और एक केबिन लगा हुआ है बेलूंस काफी कलरफुल हैं।

ये एक बिल्डिंग का फोटो नजर आ रहा हे बिल्डिंग --

और कुछ पंछी दिख रहें हैं जो नदी में हैं। नदी अच्छी दिख रही है।

ये एक बडा घर दिख रहा है जो सफेद कलर का बना हुआ है ऊपर छत --